जहाँ पर बहोत सारे पौधे हैं।

काफी भीड़ है यहां पर ये पेट्रोल पंप है।

हरे कलर की लाइट भी यहां प लगी हुई है।

मैं देख पा रही हूं कि ये खाली मैदान है।

बाहर काफी सारे यहां पर लाइटे लगी हुई है।

और फर्श में टाइल्स भी लगा हुआ है।

और काफी सारे पंखे यहां पर लगे हुए हैं।

एक आदमी भी यहाॅं पर खड़ा हुआ हैं।

और बड़ा सा काउंटर है जहां पर एक लड़का बैठा हुआ है।

काफी सारी फोटो टंगी हुई है यहां पर।

यहां पर लाइटे भी काफी सारी लगी हुई है।

मैं देख पा रहीं हूंँ ये एक सैलून है जहाँ पर--

और काफी सारे पेड़ पौधे यहां पर लगे हुए हैं।

और यहां पर एसी भी यहां पर लगा हुआ है।

काफी बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं।